बहुत सारे बिल्डिंग दिखाई दिखाई दे रही है और वो बिल्डिंग हॉस्पिटल का बोर्ड दिखाई दे रहा है एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क --

एक सड़क दिखाई दे रही है। सड़क पर बहुत सारी बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है। लोग बैठे दिख --

एक टेबल पर केक रखा हुआ दिखाई दे रहा है केक व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है केक में बहुत सारे रेड कलर के हार्ट लगे हुए दिखाई दे रहे --

जड़े हुए पड़े हुए दिखाई दे रहे है। नीचे घास उगता भी दिखाई दे रहे है। कुछ झाड़िया यहाँ से पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है। जंगल में पांच लड़के चलते हुए दिखाई दे रहे है। दो लड़का रेड कलर में बैग --

एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है हॉल में रामचंद्र भगवन की एक तस्वीर --